यह एक पंडाल है जो बहोत सुंदर तरीके से सजाया गया है बिल्कुल--

यहां पेट्रोल पंप है यहां पर--

बाकी सब की नजर टी_वी पर ही है।

ये दरवाजे पर फूलों से सजाया गया है और--

बिल्डिंग है जो बहोत ही बड़ा है इसमें बहुत सारे काम होते होंगे सा--

यह एक ममता नर्सिंग होम है।

यहां पूजा पाठ किया जाता है।

यह एक घर है खाली है जहां पे दो आदमी खड़े हैं एक लड़का--